पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

बगल में गमले पौधे भी लगे हुए हैं।

ये बगल में एक पार्क क्लब है।

उनपे फूल माला अगरबत्ती लगा रखी है।

तस्वीर में ये नजर आ रहा है कि यहां पे बड़े बड़े से पेड़ लगे हुए है।

एक बैठने के लिए यहां पे जगह दे रखी है।

आस पास पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

सभी लोग नहीं आए हैं इसलिए पूरा खाली पड़ा हुआ है।

मैग्गी हॉर्लिक्स मसाले जैसी एक तार टंगा हुआ है।

ब्लैक कलर की रेलिंग लगी है।

यहां पे एक आई_सी_आई बैंक है।

यहां पे पुजारी पूजा कर रहा है।

यहां पे काफी सारे सरदार लोग है।

कुछ अंदर बाहर जा रहे हैं।

स्टेज सजा हुआ है जहां पे जयमाल होना है।

कंटेनर है इसमें पौधे भी लगा सकते हैं तुलसी जी भी लगा सकते हैं।